जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर फादर खड़े हुए हैं पीछे चर्च है जो कि यहाँ पर भगवान जी की फोटो लगी हुई है तथा यहाँ पर गॉड की फोटो लगी हुई है और यहाँ--

की दीवारें पीले रंग की सफेद रंग के भूरे रंग के पर्दे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेयर पढ़ रहे हैं यहाँ की जमीन जो भूरे रंग की है इसमें--

जैसा की मै यहाँ देख पारी हूँ यहाँ पर एक आदमी है जो की खडा हुआ तथा पिछे पेल अ भ भवन बना हुआ है जो की भूरे तथा हरा और पीले रंग का --